इसमें एक पेन जैसा बना हुआ है जो कि वाइट कलर का है। यहाँ पर बोहोत अच्छी सुंदर-सुंदर गमले रखे हुए हैं जो कि एक एक रेड कलर की है।

सामने में कार भी खड़ी है बहुत सारी जोकि व्हाइट कलर की हैं और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

संतरे कलर की इन्होंने जैकेट लगाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी बाट दिखाई दे रही है। यहाँ एक दरवाजा --